वहाँ पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहें हैं और यहाँ पर कुछ सफेद कलर की जाली भी लगी हुई है।

और इसके आस-पास कुछ पत्तियां लगी हुई हैं और यहाँ पर कुछ डालियाँ भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में कुछ बच्चें जमीन पर बैठकर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं व एक व्यक्ति इनकी फोटो क्लिक कर रहा है उसने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ है।